झाड़ हमा बड़े बड़े पेड़ हमा पूरा बगीचा दिखाल ला है ओं बाइक खड़ी लागी है कई अट्टे कईयाँ हमें दिखाला बढियाँ हरा पीला सामने कर।

बाहर में खड़ी है ई बाइक है एक लड़का जालला है। पेड़ है हरे हरे बड़े बड़े पेड़ हम सामने में पूरा मैदान पढ़ेला है और जाई के गेट अंदर घुसे के रा --

होई पंधरा बीस फीट केयर बी और बढियाँ ब्रिज निकाल रहा।

एक के बोर्ड लगा ले है उसमें बजरंग बली की मूर्ति अ फोटो दिखा ला है बाजू में दुकान --